इसके पास में एक समुद्र है जो दिखने में बहोत ही बढ़िया और बहोत ही सुन्दर है यह समुद्र से किसान लोग सिंचाई करके फसल उगाते हैं और अच्छा भी है --

इसे देखने और घूमने के लिए यहाँ बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं अरे स्कूल बहुत बड़ा बहुत सुन --

यह इमेज दिखने में बोहोत खूबसूरत भी है। यह एक अच्छा-सा हमे है। बढ़िया-सा सुंदर-सा बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। जो गुब्बारे के साथ खेल रहे है और यह बच्चे बहुत ही खेलते-खेलते मज़े कर रहे और बहुत बड़ा और एक गुब्बारा बहुत ही दिखने में सुंदर और अच्छा है।

जो एक लेडीज और एक जेंट्स बेच रहे हैं और यह मछली की मंडी है यहाँ बहुत दूर-दूर से लोग मछलियाँ ख़रीदने के लिए आते हैं क्योंकि यह मछली बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगती है और बहुत ही सस्ते दामों में अच्छी मछली मिलती है ।